मेरे प्यारे देशवासियो 2016 की ये पहली मन की बात है
मन की बात ने मुझे आप लोगों के साथ ऐसे बाँध के रखा है ऐसे बाँध के रखा है कि कोई भी चीज़ नज़र आ जाती है कोई विचार आ जाता है तो आपके बीच बता देने की इच्छा हो जाती है
कल मैं पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने के लिये राजघाट गया था
शहीदों को नमन करने का ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है
ठीक 11 बजे 2 मिनट के लिये मौन रख करके देश के लिये जान की बाज़ी लगा देने वाले प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों के लिये वीर पुरुषों के लिये तेजस्वीतपस्वी लोगों के लिये श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है
लेकिन अगर हम देखें हम में से कई लोग हैं जिन्होंने ये नहीं किया होगा
आपको नहीं लगता है कि ये स्वभाव बनना चाहिए इसे हमें अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी समझना चाहिए मैं जानता हूँ मेरी एक मन की बात से ये होने वाला नहीं है
लेकिन जो मैंने कल फील किया लगा आपसे भी बातें करूँ
और यही बातें हैं जो देश के लिये हमें जीने की प्रेरणा देती हैं
आप कल्पना तो कीजिए हर वर्ष 30 जनवरी ठीक 11 बजे सवासौ करोड़ देशवासी 2 मिनट के लिये मौन रखें
आप कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना में कितनी बड़ी ताक़त होगी और ये बात सही है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम हम सब एक साथ चलें एक साथ बोलें हमारे मन एक हों
यही तो राष्ट्र की सच्ची ताक़त है और इस ताक़त को प्राण देने का काम ऐसी घटनायें करती हैं
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था
तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई
खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है हिन्दुस्तान की आज़ादी खादी में ही है हिन्दुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है हिन्दुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं वह अहिंसा खादी में ही है और हिन्दुस्तान के किसान जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं उनका कल्याण भी खादी में ही है
सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का माहात्म्य बताया है
मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्य तिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ मैंने पत्र लिख करके पहुँचने का प्रयास किया
वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयोंबहनों तक पहुँचने का प्रयास किया है
खादी अब एक सिम्बोल बना है एक अलग पहचान बना है
अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जोजो होलिस्टिक हेल्थ केयर और आर्गेनिक की तरफ़ झुकाव रखते हैं उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है
फ़ैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है
अर्थव्यवस्था में बाज़ार का अपना महत्व है
खादी ने भी भावात्मक जगह के साथसाथ बाज़ार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है
जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के फैब्रिक्स आपके पास हैं तो एक खादी भी तो होना चाहिये
और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हाँ भई खादीधारी तो नहीं बन सकते लेकिन अगर दसों प्रकार के फैब्रिक हैं तो एक और हो जाए
लेकिन साथसाथ मेरी बात को सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है
बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था
लेकिन धीरेधीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब ख़त्म होता गया और खादी से जुड़े हुए हमारे ग़रीब लोग बेरोज़गार होते गए
खादी में करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की ताकत है
पिछले दिनों रेल मंत्रालय पुलिस विभाग भारतीय नौसेना उत्तराखण्ड का डाकविभाग ऐसे कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणामस्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एक्सट्रा 18 लाख मानव दिन का रोज़गार जनरेट होगा
18 लख मैंडेज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप होगा
पूज्य बापू भी हमेशा टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे और तभी तो हमारा चरखा विकसित होतेहोते यहाँ पहुँचा है
इन दिनों सोलार का उपयोग करते हुए चरखा चलाना सोलार एनर्जी चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है
उसके कारण मेहनत कम हुई है उत्पादन बढ़ा है और क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन भी आया है
ख़ास करके सोलार चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं
राजस्थान के दौसा से गीता देवी कोमल देवी और बिहार के नवादा ज़िले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि सोलार चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है
हमारी आय डबल हो गयी है और हमारा जो सूत है उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है
ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं
और 30 जनवरी पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं तो मैं फिर एक बार दोहराऊँगा इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे इसके आग्रही बनें
प्यारे देशवासियो 26 जनवरी का पर्व बहुत उमंग और उत्साह के साथ हम सबने मनाया
चारों तरफ़ आतंकवादी क्या करेंगे इसकी चिंता के बीच देशवासियों ने हिम्मत दिखाई हौसला दिखाया और आनबानशान के साथ प्रजासत्ताक पर्व मनाया
लेकिन कुछ लोगों ने हट करके कुछ बातें कीं और मैं चाहूँगा कि ये बातें ध्यान देने जैसी हैं ख़ासकरके हरियाणा और गुजरात दो राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया
इस वर्ष उन्होंने हर गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका ध्वजवंदन करने के लिए उन्होंने उस गाँव की जो सबसे पढ़ीलिखी बेटी है उसको पसंद किया
हरियाणा और गुजरात ने बेटी को माहात्म्य दिया
पढ़ीलिखी बेटी को विशेष माहात्म्य दिया
बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ इसका एक उत्तम सन्देश देने का उन्होंने प्रयास किया
मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूँ और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूँ जिन्हें ध्वजवंदन ध्वजारोहण का अवसर मिला
हरियाणा में तो और भी बात हुई कि गत एक वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वीआईपी के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया
ये अपने आप में इतना बड़ा गौरव का पल था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था क्योंकि हरियाणा में सेक्सरेशियो में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी
एक हज़ार बेटों के सामने जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम हो गयी थी
बड़ी चिंता थी सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ गया था
और जब मैंने हरियाणा पसंद किया तो मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा था कि नहींनहीं साहब वहाँ मत कीजिए वहाँ तो बड़ा ही नेगेटिव माहौल है
लेकिन मैंने काम किया और मैं आज हरियाणा का ह्रदय से अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने इस बात को अपनी बात बना लिया और आज बेटियों के जन्म की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है
मैं सचमुच में वहाँ के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए अभिनन्दन करता हूँ
पिछली बार मन की बात में मैंने दो बातें कही थीं
एक एक नागरिक के नाते हम महापुरुषों के स्टेच्यू की सफाई क्यों न करें स्टेच्यू लगाने के लिये तो हम बड़े इमोशनल होते हैं लेकिन बाद में हम बेपरवाह होते हैं
और दूसरी बात मैंने कही थी प्रजासत्ताक पर्व है तो हम कर्तव्य पर भी बल कैसे दें कर्तव्य की चर्चा कैसे हो अधिकारों की चर्चा बहुत हुई है और होती भी रहेगी लेकिन कर्तव्यों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए मुझे खुशी है कि देश के कई स्थानों पर नागरिक आगे आए सामाजिक संस्थायें आगे आईं शैक्षिक संस्थायें आगे आईं कुछ संतमहात्मा आगे आए और उन सबने कहींनकहीं जहाँ ये स्टेच्यू हैं प्रतिमायें हैं उसकी सफ़ाई की परिसर की सफ़ाई की
एक अच्छी शुरुआत हुई है और ये सिर्फ़ स्वच्छता अभियान नहीं है ये सम्मान अभियान भी है
मैं हर किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो ख़बरें मिली हैं बड़ी संतोषजनक हैं
कुछ लोग संकोचवश शायद ख़बरें देते नहीं हैं
मैं उन सबसे आग्रह करता हूँ माइगोव पोर्टल पर आपने जो स्टेच्यू की सफ़ाई की है उसकी फोटो ज़रूर भेजिए
दुनिया के लोग उसको देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं
उसी प्रकार से 26 जनवरी को कर्तव्य और अधिकार मैंने लोगों के विचार माँगे थे और मुझे खुशी है कि हज़ारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया
मेरे प्यारे देशवासियो एक काम के लिये मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे
हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुतकुछ बोला जाता है बहुतकुछ कहा जाता है
खैर मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूँ
लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है
उसका साल बर्बाद हो जाता है
उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फ़सल बीमा योजना
2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा किसानों को दिया है प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना
लेकिन ये योजना की तारीफ़ हो वाहवाही हो प्रधानमंत्री को बधाइयाँ मिलें इसके लिये नहीं है
इतने सालों से फ़सल बीमा की चर्चा हो रही है लेकिन देश के 2025 प्रतिशत से ज़्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं उससे जुड़ नहीं पाए है
क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले एकदो साल में हम कम से कम देश के 50 प्रतिशत किसानों को फ़सल बीमा से जोड़ सकें बस मुझे इसमें आपकी मदद चाहिये
क्योंकि अगर वो फ़सल बीमा के साथ जुड़ता है तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है
और इस बार प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना की इतनी जनस्वीकृति मिली है क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है इतना सरल बना दिया गया है इतनी टेक्नोलॉजी का इनपुट लाए हैं
और इतना ही नहीं फ़सल कटने के बाद भी अगर 15 दिन में कुछ होता है तो भी मदद का आश्वासन दिया है
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी गति तेज़ कैसे हो बीमा के पैसे पाने में विलम्ब न हो इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया है
सबसे बड़ी बात है कि फ़सल बीमा की प्रीमियम की दर इतनी नीचे कर दी गयी इतनी नीचे कर दी गयी हैं जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा
नयी बीमा योजना में किसानों के लिये प्रीमियम की अधिकतम सीमा खरीफ़ की फ़सल के लिये दो प्रतिशत और रबी की फ़सल के लिए डेढ़ प्रतिशत होगी
अब मुझे बताइए मेरा कोई किसान भाई अगर इस बात से वंचित रहे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा आप किसान नहीं होंगे लेकिन मेरी मन की बात सुन रहे हैं
क्या आप किसानों को मेरी बात पहुँचायेंगे और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अधिक प्रचारित करें
इसके लिए इस बार मैं एक आपके लिये नयी योजना भी लाया हूँ
मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना ये बात लोगों तक पहुँचे
और ये बात सही है कि टीवी पर रेडियो पर मेरी मन की बात आप सुन लेते हैं
लेकिन बाद में सुनना हो तो क्या अब मैं आपको एक नया तोहफ़ा देने जा रहा हूँ
क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी मेरे मन की बात सुन सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं
आपको सिर्फ़ इतना ही करना है बस एक मिस्ड कॉल कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से
मन की बात के लिये मोबाइल फ़ोन का नंबर तय किया है 8190881908 आठ एक नौ शून्य आठ आठ एक नौ शून्य आठ
आप मिस्ड कॉल करेंगे तो उसके बाद कभी भी मन की बात सुन पाएँगे
फ़िलहाल तो ये हिंदी में है लेकिन बहुत ही जल्द आपको अपनी मातृभाषा में भी मन की बात सुनने का अवसर मिलेगा
इसके लिए भी मेरा प्रबन्ध जारी है
मेरे प्यारे नौजवानो आपने तो कमाल कर दिया
जब स्टार्टअप का कार्यक्रम 16 जनवरी को हुआ सारे देश के नौजवानों में नयी ऊर्जा नयी चेतना नया उमंग नया उत्साह मैंने अनुभव किया
लाखों की तादाद में लोगों ने उस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया
लेकिन इतनी जगह न होने के कारण आखिर विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम किया
आप पहुँच नहीं पाए लेकिन आप पूरा समय ओनलाइन इसमें शरीक हो करके रहे
शायद कोई एक कार्यक्रम इतने घंटे तक लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपनेआप को जोड़ करके रखा और ऐसा बहुत रारेली होता है लेकिन हुआ और मैं देख रहा था कि स्टार्टअप का क्या उमंग है
और लेकिन एक बात जो सामान्य लोगों की सोच है कि स्टार्टअप मतलब कि iट
रिलेटेड बातें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कारोबार
स्टार्टअप के इस इवेंट के बाद ये भ्रम टूट गया
के आसपास का स्टार्टअप तो एक छोटा सा हिस्सा है
जीवन विशाल है आवश्यकतायें अनंत हैं
स्टार्टअप भी अनगिनत अवसरों को लेकर के आता है
मैं अभी कुछ दिन पहले सिक्किम गया था
सिक्किम अब देश का आर्गेनिक स्टेट बना है और देश भर के कृषि मंत्रियों और कृषि सचिवों को मैंने वहाँ निमंत्रित किया था
मुझे वहाँ दो नौजवानों से मिलने का मौका मिला ईआईएम से पढ़ करके निकले हैं एक हैं अनुराग अग्रवाल और दूसरी हैं सिद्धि कर्नाणी
वो स्टार्टअप की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए
वे नॉर्थईस्ट में काम करते हैं कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और हर्बल पैदावार हैं आर्गेनिक पैदावार हैं इसका ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं
ये हुई न बात
पिछ्ली बार मैंने मेरे स्टार्टअप से जुड़े लोगों से कहा था कि नरेंद्र मोदी अप्प पर अपने अनुभव भेजिए
कइयों ने भेजे हैं लेकिन और ज़्यादा आयेंगे तो मुझे ख़ुशी होगी
लेकिन जो आये हैं वो भी सचमुच में प्रेरक हैं
कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान हैं उन्होंने ओनलाइन किचेन स्टार्टअप किया है और वो मध्यमवर्गीय लोग जो रोज़ीरोटी के लिए आये हुए हैं उनको वो ओनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा टिफ़िन पहुँचाने का काम करते हैं
कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं उन्होंने किसानों के लिए और ख़ास करके पशुओं का जो आहार होता है एनिमल फीड होता है उस पर काम करने का मन बनाया है
अगर हमारे देश के पशु उनको अच्छा आहार मिलेगा तो हमें अच्छा दूध मिलेगा हमें अच्छा दूध मिलेगा तो हमारा देश का नौजवान ताक़तवर होगा
मनोज गिल्दा निखिल जी उन्होंने एग्रिस्टोरेज का स्टार्टअप शुरू किया है
वो साइंटिफिक फ्रूट्स स्टोरेज सिस्टम के साथ कृषि उत्पादों के लिए बल्क स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं
यानि ढेर सारे सुझाव आये हैं
आप और भी भेजिए मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बारबार मन की बात में अगर स्टार्टअप की बात करनी पड़ेगी जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूँ स्टार्टअप की भी करूँगा क्योंकि आपका पराक्रम ये हमारी प्रेरणा है
मेरे प्यारे देशवासियो स्वच्छता अब सौन्दर्य के साथ भी जुड़ रही है
बहुत सालों तक हम गंदगी के खिलाफ़ नाराज़गी व्यक्त करते रहे लेकिन गंदगी नहीं हटी
अब देशवासियों ने गंदगी की चर्चा छोड़ स्वच्छता की चर्चा शुरू की है और स्वच्छता का काम कहींनकहीं कुछनकुछ चल ही रहा है
लेकिन अब उसमें एक कदम नागरिक आगे बढ़ गए हैं
उन्होंने स्वच्छता के साथ सौन्दर्य जोड़ा है
एक प्रकार से सोने पे सुहागा और ख़ास करके ये बात नज़र आ रही है रेलवे स्टेशनों पर
मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों देश के कई रेलवे स्टेशन पर वहाँ के स्थानीय नागरिक स्थानीय कलाकार स्टूडेंट्स ये अपनेअपने शहर का रेलवे स्टेशन सजाने में लगे हैं
स्थानीय कला को केंद्र में रखते हुए दीवारों का पेंटिंग रखना साइनबोर्ड अच्छे ढंग से बनाना कलात्मक रूप से बनाना लोगों को जागरूक करने वाली भी चीज़ें उसमें डालनी हैं न जाने क्याक्या कर रहे हैं मुझे बताया किसी ने कि हज़ारीबाग़ के स्टेशन पर आदिवासी महिलाओं ने वहाँ की स्थानीय सोहराई और कोहबर आर्ट की डिज़ाइन से पूरे रेलवे स्टेशन को सज़ा दिया है
ठाणे ज़िले के 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने किंग सर्किल स्टेशन को सजाया माटुंगा बोरीवली खार
इधर राजस्थान से भी बहुत ख़बरें आ रही हैं सवाई माधोपुर कोटा
ऐसा लग रहा है कि हमारे रेलवे स्टेशन अपने आप में हमारी परम्पराओं की पहचान बन जायेंगे
हर कोई अब खिड़की से चायपकौड़े की लॉरी वालों को नहीं ढूंढ़ेगा ट्रेन में बैठेबैठे दीवार पर देखेगा कि यहाँ की विशेषता क्या है
और ये न रेलवे का इनिशिएटिव था न नरेन्द्र मोदी का इनिशिएटिव था
ये नागरिकों का था
देखिये नागरिक करते हैं तो कैसा करते हैं जी
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ तो तस्वीरें मिली हैं लेकिन मेरा मन करता है कि मैं और तस्वीरें देखूँ
क्या आप जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर या कहीं और स्वच्छता के साथ सौन्दर्य के लिए कुछ प्रयास किया है क्या मुझे आप भेज सकते हैं ज़रूर भेजिए
मैं तो देखूँगा लोग भी देखेंगे और औरों को भी प्रेरणा मिलेगी
और रेलवे स्टेशन पर जो हो सकता है वो बस स्टेशन पर हो सकता है वो अस्पताल में हो सकता है वो स्कूल में हो सकता है मंदिरों के आसपास हो सकता है गिरजाघरों के आसपास हो सकता है मस्जिदों के आसपास हो सकता है बाग़बगीचे में हो सकता है कितना सारा हो सकता है जिन्होंने ये विचार आया और जिन्होंने इसको शुरू किया और जिन्होंने आगे बढ़ाया सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं
लेकिन हाँ आप मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिए मैं भी देखना चाहता हूँ आपने क्या किया है
मेरे प्यारे देशवासियो अपने लिए गर्व की बात है कि फ़रवरी के प्रथम सप्ताह में 4 तारीख़ से 8 तारीख़ तक भारत बहुत बड़ी मेज़बानी कर रहा है
पूरा विश्व हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है और हमारी नौसेना इस मेज़बानी के लिए पुरजोश तैयारी कर रही है
दुनिया के कई देशों के युद्धपोत नौसेना के जहाज़ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समुद्री तट पर इकट्ठे हो रहे हैं
इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारत के समुद्र तट पर हो रहा है
विश्व की सैन्यशक्ति और हमारी सैन्यशक्ति के बीच तालमेल का एक प्रयास है
एक जॉइंट एक्सरसाइज है
बहुत बड़ा अवसर है
आने वाले दिनों में आपको टीवी मीडिया के द्वारा इसकी जानकारियाँ तो मिलने ही वाली हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सब कोई इसको बल देता है
भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है
संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है
इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता
सीमायें हमें अलग करती होंगी ज़मीन हमें अलग करती होगी लेकिन जल हमें जोड़ता है समुद्र हमें जोड़ता है
समंदर से हम अपनेआप को जोड़ सकते हैं किसी से भी जोड़ सकते हैं
और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था
चाहे छत्रपति शिवाजी हों चाहे चोल साम्राज्य हो सामुद्रिक शक्ति के विषय में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई थी
आज भी हमारे कई राज्य हैं कि जहाँ समुन्दर से जुड़ी हुई अनेक परम्पराएँ जीवित हैं उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं
विश्व जब भारत का मेहमान बन रहा है नौसेना की शक्ति का परिचय हो रहा है
एक अच्छा अवसर है
मुझे भी सौभाग्य मिलेगा इस वैश्विक अवसर पर उपस्थित रहने का
वैसे ही भारत के पूर्वी छोर गुवाहाटी में खेलकूद समारोह हो रहा है सार्क देशों का खेलकूद समारोह
सार्क देशों के हज़ारों खिलाड़ी गुवाहाटी की धरती पर आ रहे हैं
खेल का माहौल खेल का उमंग
सार्क देशों की नई पीढ़ी का एक भव्य उत्सव असम में गुवाहाटी की धरती पर हो रहा है
ये भी अपने आप में सार्क देशों के साथ नाता जोड़ने का अच्छा अवसर है
मेरे प्यारे देशवासियो मैंने पहले ही कहा था कि मन में जो आता है मन करता है आपसे खुल करके बांटूं
आने वाले दिनों में दसवीं और बारहवीं की परीक्षायें होंगी
पिछली बार मन की बात में मैंने परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों से कुछ बातें की थीं
इस बार मेरी इच्छा है कि जो विद्यार्थियों ने सफलता पाई है और तनावमुक्त परीक्षा के दिन कैसे गुज़ारे हैं परिवार में क्या माहौल बना गुरुजनों ने शिक्षकों ने क्या रोले किया स्वयं ने क्या प्रयास किये अपनों से सीनियर ने उनको क्या बताया और क्या किया आपके अच्छे अनुभव होंगे
इस बार हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अनुभव मुझे नरेंद्र मोदी अप्प पर भेज दीजिये
और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूँगा उसमें जो अच्छी बातें हों वे आने वाले फ़रवरी महीने में मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें ताकि देशभर के स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे टीवी पर देखेंगे और उनको भी चिंतामुक्त एक्साम कैसे हो तनावमुक्त एक्साम कैसे हो हँसतेखेलते एक्साम कैसे दिए जाएँ इसकी जड़ीबूटी हाथ लग जाएगी और मुझे विश्वास है कि मीडिया के मित्र इस काम में ज़रूर मदद करेंगे
हाँ लेकिन तब करेंगे जब आप सब चीज़ें भेजेंगे
भेजेंगे न पक्का भेजिए
बहुतबहुत धन्यवाद दोस्तो
फिर एक बार अगली मन की बात के लिए अगले महीने ज़रूर मिलेंगे
बहुत धन्यवाद